बिल्डिंग दिखाई दे रही बिल्डिंग काफी बड़ी दिखाई दे रही है यहाँ ओपे कुछ खंबे लगे हुए है खंबे मे लाइट लगे हुए है यहाँ बास्केटबाल कोट बना हुआ है यहाँ पे काफी सारी पब्लिक की भीड़ लगी हुई है ।

दुकान दिखाई दे रही है दुकान एक गिफ्ट की दुकान लग रही है बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड सफेद कलर का दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के ऊपर दो घड़िया दिखाई दे रही हैं बिल्डिंग के ऊपर आसमान सफेद दिखाई दे रहा है सामने कुछ झाड़ पेड़ दिखाई दे रहैं हैं यहां पर कुछ कचरा दिखाई दे रहा हैं।

यहां पर काफी सारे तार दिखाई दे रहैं हैं यहां पर एक ऑटो नजर आ रहा हैं यहां पर कुछ बाइक दिखाई दे रही हैं यहां पर एक सड़क दिखाई दे रही हैं यहां पर कुछ लोग जाते हुए नजर आ रहैं हैं।

बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं बिल्डिंग काफी बड़ी दिखाई दे रही हैं बिल्डिंग के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड पर क्वालिटी लिखा हुआ हैं यहां पर काफी सारी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं यहां पर कुछ लोग दिखाई दे रहैं हैं यहां पर काफी सारे बिजली के खंभे नजर आ रहैं हैं।

रेस्टोरेंट नजर आ रहा है रेस्टोरेंट पर एक बोर्ड लगा हुआ है बॉर्डर पर फर्स्ट आफ इट्स काईम लिखा हुआ हैं वहां पर एक लड़की बैठी हुई नजर आ रही हैं अंदर काफी सारी डेकोरेशन की गई हैं बाहर कुछ टेबल दिखाई दे रही हैं टेबल पर कुछ पर्स रखे हुए हैं।